बहोत सुंदर से भगवान की प्रतिमा--

यह एक डिस्क की तस्वीर है दर्शाया जाता है इस तस्वीर में यह समझाया जा सकता है।

यह एक सुंदरसा छोटासा गेस्ट हाउस बनाया गया है। मैं आपको तस्वीर देख कर यह समझा--

इसमें नर्स खड़ा हुआ मस्का पहनकर खड़ा है।

गुलाल का पटाखा फूटते दिखाई दे रही है दूसरे हुई--

वेह एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई--

और यहां पर लड़का पत्थरों के ऊपर चल--

यह तस्वीर सब्जी मण्डी की दर्शाई गई है इस तस्वीर में देखकर हम समझा सकते हैं यहां पे कई रेड़ीयां--

स्कूटीज बाइक्स ब दुकानों के आगे खड़ी हुई है केमिस्ट की दुकान बनी हुई है कॉस्मेटिक की दुकान लगी हुई है।

फास्ट फूड कच्चा सामान बाइल सामान फ्रीजर में रखने वाला सारा सामान ज्यूस कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि मि --